इस पिक्चर में शायद हमें मद मस्जिद दिख रही है। जिसमें कुछ मुसलमानी युवा का मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

और साथ में यहाँ पर ऊपर पंखे लटके दिखाई दे रहे हैं जो के बंद है और लाइट भी लगी हुई है। लाइट के अलावा यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं जो कि उर्दू में लिखा हुआ है उन पे।

इस फोटो में मस्जिद का चित्रण दिया हुआ है।